यहाँ पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ काफी सारे सफेद कलर के टेंट बने हुए है जो की एक खील को रेत में गड़ा कर और एक रस्सी की मदद से बने हुए है।